यहां वाईट कलर कमरा जेसा दिखाय पड़ रहा है यहा पर पर्स वाईट और ब्लू कलर में दिख हया पे सामने दो लोग बेठे दिखाय पड़ रहे है यहा पे छत पे ग्रीन कलर दिखाय पड़ रहे है और--

यहां पे एक फेन लगा हुवा है जो की वाईट कलर का है पीछे दीवार पर कुछ पोस्टर लगे हुए दिखाई पड़ रहे है यहां पीछे कुछ दो लोग और खड़े हुए दिखाई पड़ रहे है यहां सामने एक पिलर दिख रहा है पिलर मे एक पोस्टर लगे हुए दिखाई पड़ रहे है|